जैसा की आप देख सकते है यहा पर मदरसा मे बहुत से बच्चे पढ़ाई कर रहे है अह और ये मदरसा मे बाहर की तरफ बहुत खिड़की की भी लगी हुई है और इसमे सफ़ेद कलर किया गया है।

ये बच्चे टोपी लगा के पढ़ाई कर रहे है।

जैसा की आप देख सकते है यहा पर एक दो मंजिल मकान हैं जो की मेहरुन कलर का हैं इस मकान मे बड़े-बड़े काँच लगे हुए हैं और इसके सामने गेट लगा हुआ है जो की बहुत बड़ा हैं।

जैसा की आप देख सकते है यहाँ पर बहुत पुराना किला बना हुआ है ये किला पत्थर से बना हुआ है इसमे कही जगह पे चोई भी लगी हुई है।

इस किले के सामने एक पिल्लर भी खड़ा हुआ है।

इस बिल्डिंग के सामने कुछ मोटर साइकल भी पार्क है और इसमे बहुत बड़ी बड़ी खिड़की भी लगी हुई है।

जैसा की आप देख सकते है यहाँ पर एक ए_टी_एम है ए_टी_एम के सामने कार पार्क है और यहाँ पर बहुत ज्यादा मोटरसाइकल और स्कूटी भी पार्क है।